इस फोटो में मुझे कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे घर दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक फोटो में मुझे बाइक दिखाई रहीं हैं।

इस फोटो पे मुझे दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो पे मुझे मशीनें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो से मुझे लाइट की--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

इस फोटो पे मुझे कुर्सी दिखाई दे रही है।

इस फोटो पे मुझे रोड दिखाएं दे रही हैं।

इस फोटो पे मुझे जीप दिखाई दे रही है।

इस फोटो पे मुझे घर दिखाई दे रहे है

इस फोटो पे मुझे पुरुष दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो पे मुझे रोड दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो पे मुझे साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है।